रा भी यहां पे आदमी आज नहीं है। यहाँ पर घर भी दिख रहा है। घर भी बोहोत अच्छा है यहाँ पर कैमरा वेमरा सब चीज लगा हुआ है।

छठ पूजा के समय है यहां पर औरत सब छठ पूजा कर रहे हैं यहां पर केला का थम भी गड़ाया है यहां पर केला भी रखा है यहां पर कुछ बैठे हुए हैं कुछ पानी में खड़े हुए हैं यहाँ पर लड़का सब भी यहाँ पर पेड़-पौधे भी है ।